और इसमें खेत की कुछ दवाइयां भी रखी हुई है।

और इसमें गुब्बारे से डेकोरेशन कर रखी है।

इस फोटो में डेकोरेशन हो रही है।

इसमें नीले कलर की वाइट कलर की और पीले कलर की लड़ी लगी हुई है।

और इसमें लैट्रिन बाथरूम भी दिख रहे हैं।

और इसमें बिस्कुट भी रखे हुए है ला--

और इसमें कलर रखे हुए हैं।

और इसमें एक स्विटिंग बोर्ड भी लगा हुआ है।

इस फोटो में एक घर बना हुआ है।

घर के थामले पर लाइट लगी हुई है।

और एक काला पर्दा लग रहा है एक उसके ऊपर सफेद पर्दा लग रहा है।

और इसमें यहां पे जीना भी है।

और यहां पर बहोत आदमी घूम भी रहे हैं।

और काले कलर की ये कुर्सी भी रखी हुई है।

और आदमी के पीछे एक नीला कपड़ा और वाइट कपड़ा है।

इस फोटो में एक काले कलर का झरना बना हुआ है।

पीले कलर का और इसमें सरिये भी लगे हुए हैं।

और इसमें शीशे का गेट लगा हुआ है।

और पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

और व्हाइट कलर के सोफे पड़े हुए हैं।

अरे भाई यहां पे नीली से नीला रंग हो रहा है यहां पे एक रेस्टोरेंट सा है।

पीला सूट पहन रखा है उसने एक आदमी खड़ा है काला बनियान पहन रखा है।